और ये बगल साइड में है जो मुझे एक काली कुर्सी डली दिखाई दे रही है और लाल कुर्सियां भी डली हुई है बैठने के लिए और ये एक पानी का कैंप भी रखा हुआ है।

और यह बहोत सारा उजाला भी दिख रहा है फैन भी दिख रहा है और बल्ब्स भी दिख रहे है।

वह सामने कांच का गेट भी दिख रहा है और बगल में शटर भी लगी हुई है दुई स्कूटरी भी रखी हुई है एक कांटा भी --